यहाँ पे जालीदार खिड़कियां बनी हुई है यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है यहाँ पे कुछ आदमी की बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत सा कूड़ा-कचरा भी फैला हुआ है।

एक मेज भी है यहाँ पे ऊपर अंब्रेला लगा हुआ है।

जिन्होंने लाल बाहे रंग की साड़ी पहनी हुई है।

इस सोफा पे बैठे हुए है यहाँ पे हरे रंग की दरी बिछी हुई है।

जिसपे परचून का समान है यहाँ पे एक रोलर भी जा रहा है।

यहाँ पे बल्ब भी लगे हैं सामने शीशा लगा हुआ है।